बहोत सारे एक्सरसाइज करने वाले मशीन हैं।

जो कि सभी लड़कियों को योगा सीखा रहे है।

ती दामों में सभी मछलियां दी जाती है।

यह तस्वीर समस्तीपुर जंक्शन का है।

और यहां पे कई सारे बच्चे एवं बच्चिया --

यहां पे सस्ती दामो मे पेट्रोल मिलती है और अच्छी क्वालिटी का।